एक आदमी खड़ा है एक बाइक खड़ी है दो लाइट्स लगी हैं एक मेन रोड है एक टप्पर भी खड़ा दिखा है साथ में।

बहुत सारे पेड़-पौधे से नकली लगे हुए है मनी प्लांट टाइप में कांच की बॉटले टंगी हुई है डेकोरेशन की चीजे बहुत सारी रखी हुई है।

ब्राउन कलर का टेबल है जिसपे ब्राउन कलर का परदा लगा हुआ है। कांच के ग्लास रखे हुआ है। एक रिसेप्शनिस्ट पे रिसेप्शनिस्ट बैठा हुआ है। वाइट और अ ब्लू कलर की लाइट्स जल रही है और समयका है।

अ वही आकर ऑफिस मे एक कुत्ता सो रहा है जिसमे ब्लॉक कलर की टाइल्स लगी हुई है ऊपर बोर्ड वगैरा लगी हु--

एक गार्डन हे जिसमें छोटे-छोटे बाम के पेड़ लगे हैं आस-पास गिट्टीयाँ पड़ी हे मिट्टियाँ पड़ी हे पेड़-पौधे लगे हे घास लगी है।

यह रेस्टोरेंट है जिसमें कांच के टेबल हैं स्टील की चेयर है और लव हार्ट वाले कुसन टंगे हुए हैं।

बाहर डेकोरेट है वेलकम के लिए अंदर एक लड़का खड़ा है जिसने येल्लो कलर की शर्ट पहनी है फ्लावर्स से डेकोरेटिंग है अंदर बिल्डिंग है जो येलो कलर की है।